यह इंडियन बैंक है यहाँ इंडियन बैंक खुला हुआ हैयहाँ पर इंडियन बैंक में छोटा मोटी छोटी सी ब्रांच है यहाँ पे इंडियन बैंक में पैसे डाले जाते है।

घूमने जाते है काटी यहाँ पर एक छोटा -सा एक बैंक है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते- जाते है यहाँ पर बैंक के अंदर काम होता है यह बैंक के अंदर काफ़ी सारे लोग आते- जाते रहते हैं।

ओ टाइगर बैठा हुआ है और वो काफ़ी खतरनाक तरीके से लायन बैठा हुआ है वो बिल्कुल बीच में बैठा है जंगल का ये सरदार है जोकि यहाँ पर काफी खतरनाक होता हैं।

लाल मैदान है यहाँ पर लाल मैदान के बाद और यहाँ पर काफी ज्यादा मैदान हैं।

यहाँ पर ये एक रोड है यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर दो रोड मुड़ी हुई है यहाँ पर हरियाली हरियाली हो रही है पेड़ पेड़ लगे हुए है यहाँ पर सामने एक स्टोन बना हुआ है यहाँ पर बाइके खड़ी है।

इसमें के अंदर एक भालू हैं भालू सोये हैं एक बड़ा भालू हैं और पास में भालू का बच्चा हैं।

एक बड़ा तालाब है जहाँ पर काफी बड़ा ये तालाब है और तालाब के ऊपर से एक ब्रिज निकला हुआ है एवं ब्रिज काफी बड़ा ब्रिज है काफी लम्बा ब्रिज है ये --

यहाँ पर एक लड़का काम कर रहा है दो वर्कर किसी को देख रहे है उन्मे से एक काफी काले खड़े है।